वाइट कलर की रैक पे अलग तरह के पेंट्स हैं।

एक विंडो है स्टूडेंट्स के बैठने के लिए डेस्क है।

वॉटर बॉटल प्लेट्स ग्लास कुछ टेबल्स पे खाना है।

ऊपर फैंस लगे हुए हैं लाइब्रेरी की वॉल्स ब्लू कलर की है।

एक होटल की लॉबी है फ्लोर पे मार्बल बिछे हुए हैं।

दूसरी साइड की वॉल पे कैंडल्स लगे हुए हैं।

एक कैफे है जिसको ब्लू कलर से पेंट किया गया है।

उनके पीछे क्रॉस है क्रॉस पे जीसस है।

एक रूम है जिसमें बड़ा सा मिरर लगा हुआ है।

जो कि अभी दुर्गा फॉर्मेशन में खड़ी है सबने साड़ी पहनी हुई है।

एक पाथवे है जो इंटरलॉकिंग से बना हुआ है।

एक ट्रेन स्टेशन का प्लेटफार्म है जिसपे कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।

जिसके ऊपर पी_वी_आर सिनेमास का बोर्ड लगा है ।